और यह शोरूम ह भैया जिसमें कॉपी किताब सजाके रखल गइल बा। हर तरह के कॉपी किताब ह।

बढ़िया ग्राउंड बा। जहाँ लोग आवे न। हर तरह क गेम खेले न। क्रिकेट खेले न बॉलीबॉल खेले न। घूमे न टहले न और एक्ससरसाइज़ करेलन और सुबह सुबह व्यायाम करेलन।

बहुत सुंदर नजारा है भईया बहुत सुंदर स्कूल का प्रांगण है यहाँ सभी महा पुरुषों का फोटो लगा हुआ है।

इहा फर्श बा भईया फर्श पर टाइलस लागल बा और आगे में पेड़ पौधे बा और सामने में मकान बा बिल्डिंग बा बढ़िया और बढ़िया फर्श बा।

सब लाइटिंग बहुत अच्छा ह आस पास में गमला वमला बहुत बढ़िया लगल बा।

सुन्दर है पकौड़ी है भैया जिसे लोग सुबह शाम नास्ते में करते है चटनी के साथ बहुत सुन्दर डिश बनाया है बहुत सुन्दर है पकौड़ी।

भईया ई त खिलौड़े के दुकान लगत बा। लगल बा तरह-तरह के गुड़िया बा।

जिससे लोग सजाते हैं घर के सामने पार्क के सामने माकन में के सामने और सूंदर लाइटिंग की व्यवस्था है पानी गिरा था।

बहुत सुंदर दुकान है भैया लाइटियों वाईटो बहुत बढ़िया ह। कॉपी किताब की दुकान है। यहाँ हर तरह के पुराने जमाने के लोग वेद पुराण मिलेला। कापी किताब मिलेला बच्चों को पढे खातिर --

आ सामने फील्ड बा जईसे पेड़ पौधा लगल बा। गमला बा सुन्दर बहुत सुंदर बा।

चिड़िया घर ह भईया जहाँं लोग चिड़िया घर ह भईया जहाँ लोग जानवरों को पाल के घेर के और उसको फैंसी घर में रखे लं भईया।

बहुत सुंदर मस्जिद है भैयाजी जिसमे लोग शाम को आकर आ आजाम करते हैं भैयाजी| इस वक्त --